एक साड़ी की दुकान लग रही है जहा एक मुस्लिम कोई दिख रहे हैं जो इस दुकान को चला रहे हैं।

साडियाँ काफी रंग-बिरंगा यहाँ पे लगाए हुवे हैं। एक साड़ी की दुकान लग रही --